यहां पे भी फूल पौधे के अच्छे खासे डेकोरेशन इसमें मुझे नजर आ रहे हैं।

और यहां ऑफिस में कोई एक पर्सन भी मुझे इसमें दिखाई देता हुआ नहीं पड़ रहा है।

आपको भी यहां नेचुरल आइसक्रीम का दृश्य दिखाई देता हुआ भी नजर आ रहा होगा।

और आपको भी यहां नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा होगा।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और यहां पार्क का दृश्य भी एकदम खाली जैसा कु--

मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे है शायद आपको भी यह अंकल लोग--

और यहां स्टेशन का दृश्य के साथ साथ--

नजर आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहीं हैं।

नजर आ रहा होगा इसमें आपका क्या मानना है आप जरा इसे देखके बताइए?

इसमें मुझे नजर आ रहा है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं।

अनक्लीन नजर आ रहा है जैसा कि मुझे भी इस डेकोरेशन में--

यहां पे एक शाम का मौसम भी अच्छे से नजर आ रहा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे काफी--

दिखाई देती हुई भी यहां पे नजर आ रही होगी।

नजर इसमें मुझे दिखाई पड़ रहा है।